और एक ब्लैक कलर का बड़ा सा पर्दा भी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और एक इंसान बैठा हुआ है पास मे ही एक खिड़की दिखाई दे रही है जिस पर हरे कलर का पर्दा डला हुआ है एक वाइट कलर की घड़ी लगी हुई --

साथ ही यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो की ब्लैक कलर की है और सामने ही कुछ बिल्डिंग्स और घर दिखाई दे रहे हैं जो की व्हाइट कलर के हैं।

यहाँ पर एक व्हाइट कलर की कार रखी हुई है और दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं।